हाथों मे बोतल लगा हुआ है इससे ये प्रतीत हो रहा है कि वो व्यक्ति पूजा करके आया है और पीछे मे भी मंदिर जैसा दृश्य दिख रहा है और बहुत सारे लोग दिख रहे है ।

लड़के के पीछे बहुत सारे टेबल भी रखे हुए हैं जिससे यह प्रतीत होता है की यह कैफ़े है।

एक दोस्त अपने बाये हाथों मे मोबाईल देख रहा है ओर एक ओर लड़का जो किसी और देख रहा है ।

एक मेला लगा हुआ हैं यहां पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं।

कुछ लोग यहाँ पर समान खरीदते हुए भी दिख रहे हैं यही पीछे की ओर एक सात तीन बड़े-बड़े झूलें भी लगे हुए हैं जो बहोत ऊंचे हैं।

बहोत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं| सामने में बाइक भी रखे हुए हैं और गेट बना हुआ है जिसमें सोनपुर मेला लिखा हुआ है।

यह कोयले के खदान है जहाँ पर बहोत सारे कर्मचारी एक साथ ऊपर और निचे काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक वेट लिफ्टिंग मशीन भी है जहाँ पर बक्से में--

स्कूल का चित्र है जहाँ पर देखा जा सकता है की वे बहोत सारे बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं और --

सभी कुछ न कुछ कलाकृतियाँ बना रही है। उसी बीच एक मैडम भी खड़ी है जो इन सभी को देख रही है और बच्चे इ विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाते नज़र आ भी रहे हैं।